जहां में स्टैचू के अंदर काफी सारे स्वेटर पहनाए गए हैं।

अंदर के ओर एक मूर्ति भी बनाया गया है।

यहां पे तीन चेयर नजर आ रहे हैं जो लोहे की मदद से बनी हुई है।

यहां पर दो तीन व्यक्ति नजर आ रहे हैं जिनके कपड़े का कलर अनेक हैं।

में चुनरी वगैरा टंगे हुए नारियल ये सब--

यहां पर कुछ व्यक्ति हैं जो सामान को खरीदते हुए नजर आ रहे हैं।

जहां पे अल्मुनियम के दो गेट रखे हुए हैं।

यहां पे शीशे के केबिन बनी हुई है।

साइड में एक बिल्डिंग नजर आ रही है जहां पे एक बाल्टी और रस्सी नजर आ रही है।

किंडर जॉय बिस्किट्स साइड में शैंपू वगैरा साबुन वगैरा भी रखे हुए हैं।

जिसके अंदर काफी सारे चप्पल जूता शूज रखे हुए हैं।

यहां पे काफी सारे फाइबर की पाइप नजर आ रहे है।

यहां पे बैलून से डेकोरेशन किए गए।

केवल मिट्टी वगैरा भी नजर आ रही है।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

यहां पे काफी सारे सामान रखे हुए हैं जो अनेक कलर के हैं।

लोहे की मदद से कार को ऊपर के ओर रखकर एक व्यक्ति ने पाइप से कर को धोते हुए नजर आ रहे हैं।

यहां पे लकड़ी के मदद से कबड बनाए गए हैं।

उनके सूंड प एक व्यक्ति बैठे हुए हैं जिनके कपड़े कलर व्हाइट एवं ग्रे हैं।

जहां पे एक व्यक्ति लोहे की गेट बनाते हुए नजर आ रहे हैं।

पीछे की ओर एक फ्रिज नजर आ रही है जिसकी कलर रेड है।

यहां पे तीन चार व्यक्ति नजर आ रहे हैं जो बाइक से --

नीचे की ओर छोटी छोटी घास वगैरा भी नजर आ रहे है।

साइड में लकड़ी की मदद से खंभे बनाये गये--

एक बच्चे रस्सी के मदद से पहाड़ के ओर चढ़ते हुए नजर आ रहा है।

जहां पे काफी सारे पहाड़ नजर आ रहे हैं व बड़ा बड़ा।

नीचे की ओर खाई वगैरह भी नजर आ रहे हैं।